यह एक मार्केट प्रतीत हो रही है जिस में की तरह-तरह की मछलियां और सी फूड बेचने के लिए लगाया हुआ जिसमें की दो चार वेंडर्स नजर आ रहे है तराजू भी रखे हुए हैं।

जो कि एक तो जल रहा है और एक जलने की तैयारी में है और लोग खड़े होकर उसका आनंद ले रहे --

छ: सात बच्चियाॅं हरे और पिकं कलर की रंगोली बना रही हैं।

और उर्दू में पीछे कुछ लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारे आदमी भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने की टोपियाँ पहनी हैं।

आगे पीछे दो तीन पिल्लर्स बने हुए हैं और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर पिल्लर के आगे खड़े हो के फोटो खिचवा रा --

इस तस्वीर में कैनरा बैंक के बोर्ड नजर आ रहे हैं।

यह एक सड़क का नजारा है जिसपे कि एक सामान वाला रिक्शा एक इन्सान खींच रहा है। पीछे सफ़ेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है और सड़क के पास से ही नहर गुजर रही है।